यहाँ पे देखिए स कुछ किसी चीज़ का पार्टी चल रहा हैं। वहाँ पे बहोत बड़े-बड़े आदमी आये हैं। उसके बगल में --

तो या ये देखिए ये अमेरिका यू.एस.ए. का न्यूयोर्क में महात्मा बुद्ध का सिन है जो बहुत बड़ी मूर्ति है। उसके बगल में देखिए तो हरे-भरे पेड़-पौधे हैं।

तो यहाँ पे देखिए एक सुन्दर सा तालाब है उ जो पार्क लेखा लग रहा है। यहाँ पे एक वृक्ष है। अज् यहाँ पे बहुत सारे उम्म पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। देखने में बहुत आकर्षक लग रहा --